बहुत सुन्दर यहां पर मस्जिद है यहां पे एक नदी मतलब बड़ा सा तालाब बना अ मतलब कुआ बनाया गया है जिससे पानी निकाल कर जु जो बनाते है।